ऊपर से सोने खाने का दिख रहा हैं बोहोत अच्छा दिख रहा हैं।

बहुत ही पुराना मंदिर है बहुत अच्छा दिख रहा हैं ।

यहाँ पर बहुत सारे कुर्सी लगाए गए है और पीछे प्रोग्राम चल रहा है और लाइट बत्ती जल रहा है।

बहुत ही अच्छा लग रहा है आदमी बहुत है कुर्सी बहुत है और लाइट वाइट् भी जल रहा हैं।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

और बहुत ही अच्छा दिख रहा है हरे -भरे पेड़ बहुत ही सुंदर दिख रहा।

यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े मंदिर दिखाई दे रहे हैं।

दरवाजे पर फोर जी लिखा हुआ है और कांच का दरवाजा है बहुत ही अच्छा दिख रहा है अन्दर में लाइट उट जल रहा हैं।